हरा कलर का भीहै लाइट -उट लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है ब्लू कलर का है ।

तो बहुत बड़ा मकान है ।

यहाँ पर एक बड़ा-सा मंदिर दिखाई दे रहा है ।

बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी दिखाई दे रहा है ।